यहाँ पर ढ़ेर सारे तार बिख़रे हुए दिखाई दे रहे हैं ग्रीन कलर की मैट भी बिछी हुई है कई ढ़ेर सारे पर्दे भी लगे --

यहाँ एक स्कूटी खड़ी दिखाई दे रही है व एक दुकान दिखाई दे रहा है पास में खड़े ल-एक आदमी दिखाई दे रहा है।

ढेर सारी कुर्सियां लगी दिखाई दे रहे हैं पर्दे लगे हुए है दिखाई दे रहे हैं ढेर सारी लाइटें दिखाई दे रही हैं सामने एक बड़ा-सा सोफा रक्खा दिखाई--

किसी होटल की पिक दिखाई दे रही है।

एक बड़ा मैदान दिखाई दे रहा है जहाँ पर दुर-दुर कहीं घर भी दिखाई दे रहे है बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे रहे है।

एक मैदान के तरीके का दिखाई दे रहा है जहाँ पर ढेर सारी अ गाड़ियां खड़ी हैं और बड़े-बड़े पेड भी लगे दिखाई दे रहे हैं| उसके पीछे एक बहुत बड़ी-सी बिल्डिंग भी --

यहाँ बहुत ढेरो सारे पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे हैं बीच में पानी बेहता हुआ दिखाई दे रहा है छोटे-छोटे घासे भी दिखाई दे रहे है।

यह पिक्चर किसी खाली मैदान की है जहाँ पर ढेर सारी घासें दिखाई दे रही हैं सामने एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

मास्क लगाए हुए हैं और कुछ लोग अपने सर पे कुछ बांधे हुए हैं ऊपर पंखा भी लगा हुआ है।

यहाँ सामने एक बेड रखा हुआ है जिस पर एक कंकाल रखा हुआ है | सामने एक बोर्ड रखा हुआ है जिसके ऊपर एक दवा रखी है।